एक बैनर भी लगाया गया है एक हेलमेट भी टंगा हुआ है एक बाल्टी भी रखी हुई है एक कपड़ा भी रखा हुआ है कुछ तारें भी दिखाई दे रही हैं।

इसके ऊपर क्रॉस का साइन भी बना हुआ है कुछ स्ट्रीट लैंप भी जल रही है यहां पर और भी कई सारी दुकानें दिखाई जा रही है।

पीछे की ओर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर पंखा भी दिखाई दे रहा है काफी सारी लाइटे भी जल रही है यहां पर एक टेबल में दिखाया जा रहा है इस पर एक सीजर रखा गया है।

इसमें काफी सारी लाइटें भी जल रही है कुछ फूल से सजावट भी की गई है।